c और c ++ में 2डाइमेंशनल arrays पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
2डाइमेंशनल array क्या है
हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे
इस tutorial को record करने के लिये
मैं उबंटु operating system version 1110
उबंटु पर gcc और g ++ compiler version 461 का उपयोग कर रहा हूँ
2 डाइमेंशनल array के परिचय के साथ शुरू करते हैं
2d arrays row column matrix में संचित होते है
बायाँ index row दर्शाता है
दायाँ index column दर्शाता है
c और c ++ में matrix या array का शुरूवाती index हमेशा 0 होता है
यहाँ हम row column मैट्रिक्समें 2 डाइमेंशनल array देखेंगे
शुरूवाती index 0 है
देखते हैं कि 2डाइमेंशनल array घोषित कैसे करें
इसके लिये syntax है
datatype array name row और column
उदाहरण यहाँ हमने num 2 rows और 3 columns के साथ 2 डाइमेंशनल array घोषित किया है
अब एक उदाहरण देखें
मैने program पहले ही टाइप कर दिया है इसे खोलता हूँ
ध्यान दें कि हमारा file 2d hyphen array dot c है
इस program में sum 2 डाइमेंशनल array के elements के योग की गणना करेंगे
अब मैं code समझाता हूँ
यह हमारी header file है
यह हमरा main function है
यहाँ हमने variables i और j घोषित किया है
फिर हमने 3 rows और 4 columns के साथ num1 घोषित किया है
और num2 फिर से rows और columns के साथ
num1 और num22 डाइमेंशनल अरै हैं
यहाँ हमने यूज़र से input के रूप में num1 matrix के elements को लिया
elements पंक्तिवार संचित होते है
हमने i के लिए rows और j के लिए columns निर्धारित किया है
यह for loop condition जाँचेगा कि i 0 से 2 तक रन होता है
यह for loop condition जाँचेगा कि j 0 से 3 तक रन होता है
उसी तरह यहाँ हमने यूज़र से input के रूप में num2 matrix के elements को लिया
यहाँ हम matrix num1 प्रदर्शित करते हैं
यहाँ percent 3d का उपयोग terminal पर matrix के अलाइन के लिए किया जाता है
अब यहाँ हम matrix num2 प्रदर्शित करते हैं
फिर हम num1 matrix और num2 matrix को जोडते हैं और परिणाम प्रदर्शित करते हैं
यह हमारी return statement है
अब save पर click करें
program निष्पादित करें
कृपया अपने keyboard पर ctrl alt और t keys एक साथ दबाकर terminal window खोलें
कंपाइल करने के लिये type करें gcc space 2d hypen array dot c space hyphen o space arr और enter दबाएँ
निष्पादित करने के लिए type करें dot slash arr arr enter दबाएँ
यहाँ हम देखते हैं enter the elements of 3 into 4 array num1
अब मैं values प्रविष्ट करूँगा
अब हम देख सकते हैं enter the elements of 3 into 4 array num2
मैं values प्रविष्ट करूँगा
output प्रदर्शित होता है
यहाँ हम num1 matrix देख सकते हैं
यहाँ हम num2 matrix देख सकते हैं
और यह num1 और num2 का योग है
अब हम देखेंगे कि c ++ में इसी program को निष्पादित कैसे करें
मैंने program पहले ही लिख लिया है मैं इसे खोलूँगा और समझाऊँगा
c ++ में 2 डाइमेंशनल arrays के लिए यह program है
ध्यान दें कि हमारा file 2d hyphen array dot cpp है
extension dot cpp है
अब मैं code समझाता हूँ
यह iostream हमारी header file है
यह हमारा using statement है
यह हमारा main function है
यहाँ हमारे पास cout function है क्योंकि हम c ++ में output print करने के लिए cout का उपयोग करते हैं
फिर हमारे पास cin function है हम c ++ में line को read करने के लिए cin का उपयोग करते हैं
यहाँ हम slash t का उपयोग करते हैं इसका अर्थ है horizontal टैब जो 4 spaces के समतुल्य है
बाकी code हमारे c code के समान है
अब save पर click करें
निष्पादित करें terminal पर वापस आएँ
prompt को clear करें
कंपाइल करने के लिए type करें g ++ space 2d hypen array dot cpp hyphen o space arr1 और enter दबाएँ
निष्पादित करने के लिए type करें dot slash arr1 enter दबाएँ
यहाँ हम देखते हैं enter the elements of 3 into 4 array num1
मैं values प्रविष्ट करूँगा
अब हम देखते हैं enter the elements of 3 into 4 array num2
मैं values प्रविष्ट करूँगा
output प्रदर्शित होता है
हम देख सकते हैं num1 matrix num2 matrix
और यह num1 और num2 का योग है
इसी के साथ हम इस tutorial की समाप्ति पर आ गए हैं
slide पर वापस आएँ सारांशित करें
इस tutorial में हमने सीखा
2d array में elements जोडना
2d array print करना
और 2 डाइमेंशनल array के योग की गणना करना
नियतकार्य के रूप में एक program लिखें जो यूजर से input के रूप में दो 2डाइमेंशनल arrays ले
उन्हें subtract सब्ट्रैक्ट करें और परिणाम ज्ञात करें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
spoken tutorial project team
spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह भारत सरकार एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है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
यह script लता द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आप से विदा लेता हूँ
धन्यवाद